बहोत सा ईटों का ढांचा बना हुआ है लम्बे-लम्बे पोल है जिसपे तार बंधे हुए है झाडिया है बड़े-बड़े पेड़ है एक घर भी है ग्रिल है।

यह एक स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया का तस्वीर है इसके पीछे एक बड़ा सा इंस्टिट्यूट है।

यह एक सड़क का है सड़क है यहां पर अअअअ मम्म कुछ ममम बहुत सारी टायर हैं एक पाइप है।

व्हाश फेशिन है परदा है शीशा है